स्लेटी रंग की कुर्सी रखी हुई है पौधों पर गुलाबी लाल पीले--

सफेद रंग की बिल्डिंग है। उस पर लाल रंग का बॉर्डर है। लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

क्रीम कलर का शेड दिख रहा है।

एक पोस्टर है उस पर एक आदमी नीली शर्ट पहने हैं एक आदमी सफेद शर्ट पहने हैं।